एक पार्क दिखाई दे रहा है।

कुछ लाइट्स दिखाई दे रहे हैं आसमान में--

और कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

दे रही है आसमान दिखाई दे रहा है।

यहां पर कुछ कीवी रखी हुई दिखाई दे रही है जो की रेड और पिंक कलर की दिखाई दे रही है और--

एक प्लेट दिखाई दे रही है और--

जहां पर बोहोत से बैनर्स लगे हुए दिखाइ--

कुछ औरतें दिखाई दे रही है।

कुछ खिड़कियां भी दिखाई दे रही हैं और आसमान दिखाई दे रहा है।

बहोत से पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक ब्लैक कलर का प्लेट दिखाइ--

कुछ खिड़कियां दिखाई दे रही है।

बहोत से लड़के भी दिखाई दे रहे हैं और--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

आस-पास बहुत घास दिखाई दे रहा है और आसमान भी दिखाई दे रहा है।

जिनके चेहरे पर ब्लर दिखाई दे रहा है।

कुछ बदल भी दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ आटे के लिफाफे दिखाई दे रहे हैं।

एक पानी का मग दिखाई दे रहा है।

कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं और पहाड़ दिखाई दे रहा है।

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं आसमान दिखाई दे रहा है।